सामने ट्रेन की तीन पटरिया बिछ रही हैं रेलवे स्टेशन पर लाइट आ रही है।

इसमें एक एडिडास का है एक डबल एक्स का है चार टाउन के हैं एक फिर डबल एक्स का है एक एस_जी का है एक डबल एक्स का है और एक--

और इस कॉलोनी का रंग लाल है और इस पर शीशे लग रहे हैं और--

और यहां बहुत सारा सोना है और बहुत सारे चूड़ियां भी रखी हैं और यहां बहुत सारी चैने हैं।

यह शायद मार्केट है यहां बहुत सारे औरतें घूम रही हैं एक मोबाइल शॉप भी है।

किसी का भी मुंह दिखाई नहीं दे रहा है बर्गर का पैकेट रख रहे हैं बहुत सारे और यहां बहुत सारा खाने का सामान रखा है।